छोटे और बड़े दोनों मिक्स किए हुए हैं और छोटे पौद्ये और बड़े पौद्ये भी है और देखने में भी हरा भरा लग रहा है और --

यहाँ पे एक तालाब है तालाब में बहुत पानी है और तालाब गाहरा है और चारो तरफ सीढी बनाया गया है और--

यहाँ पे एक स्कूल हैं जो बहुत पुराना है और अच्छा देखने में लग रहा है इसका कलर जो है रेड है|

और अच्छा भी लग रहा है जो देखने में खूबसूरत--

पीला कलर का पेंट किया हुआ है जो देखने में भी अच्छा लग रहा हैं और यह एक उसमें लिखा हुआ पेट्रोल --

यहाँ पे एक स्कूल हैं जो पिला कलर से पेंट किया हुआ हैं और देखने में बहुत लम्बा लग रहा और उचा--

यहाँ पे एक अस्पताल है एक अस्पताल में तीन बेड लगाया गया हैं और तीन खिड़कियाँ हैं और एक पंखे और पांच पोस्टर लगा हुआ हैं।

जो देखने में सुंन्दर नजारा लग रहा है और पानी में नाइ हैं जो समुन्द्र में चल रहें हैं ।

यहाँ पे एक नाय हैं जो तीन तिरंगा लगाया गया और दो भगवा रंग का धागा लगाया जो बहुत अच्छा से नाई को--